इस तस्वीर में मुझे एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है।

मार्बल ग्रेनाइट पंखे टाइल --

यहां पर बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं उनमें से कुछ महिलाएं आती हैं तो कुछ पुरुष होते हैं कुछ लेडिस होती है तो कुछ मेल होती है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा वातावरण नजर आ रहा हैं यहां पर एक गोमती अच्छा सा सुंदर सा--

यहां पर बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य है पेड़ पौधे है एक नदी या फिर झील देखने को मिल रही है नदी को अंग्रेजी में रिवर कहते है।

बहुत ही सुंदर एवं अच्छा वातावरण है।

पुस्तकें देखने को मिल रही है कई कई प्रकार की एक पुस्तक दिखाई दे रही है जिसके ऊपर नाम है मित्र एवं अन्य पुस्तकों के बंडल भी हैं।

इस तस्वीर में हमें ये अच्छा सा वातावरण नजर आ रहा है जिसमें से अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक आइटम एवं दीवार पर --

रहा है बहुत ही अच्छा दर्शन डेकोरेट किया गया है देखने के लायक नजारा है।

इस तस्वीर में हमें बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पर बहुत ही अच्छी घर की सजावट की गई है।

जगह हो सकती है जिसमें मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है और कुछ पुरुष हैं।

कोई अल्लाह की मस्जिद है जिसमें मुस्लिम लोग हैं वो उन्होंने सारे लोगों ने सिर पर सफेद कलर की टोपी पहन रखी है।